और ये फूल भी पीला कलर का दिखाई --

यहां पर दिख रहा है।

घर भी दिखाई दे रहा है सारा --

यहाँ पर वीडियो एडियो एस्कूल --

यहां पर रोटावेटर रिपेयरिंग किया जाता हैं रोटावेटर को खोल करके बनाया जाता हैं और ट्रैक्टर भी बनाया --

खड़ा है जुम्मा पड़ने के लिए और सब के माथे पे टोपी भी लगा हुआ है।